बहुत सारा आदमी संग बिराज कोहली का मैच खेल रहा है।

साड़ी उड़ी बेचता है सब कुछ है। लेडीज की कपड़ा सब है दुकान है हमारी एत्ठे लेडीज का कपड़ा बेचता है साड़ी है लहंगा है और --